ऊपर एक हरे रंग का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

इसके अंदर एक पोल लगा हुआ है जिसके ऊपर से बहोत सारी तारे गई हुई हैं।

यहां पे एक नीले रंग का छोटा सा टेंट लगा है।

इसके सामने कुछ बिल्डिंगे दिखाई दे रहीं हैं जिनके बाहर कुछ गाड़िया खड़ी है।

जिसके ऊपर स्टडी इन एट लोएस्ट लिखा हुआ है।

इस तस्वीर में हमें एक बड़ी सी इमारत दर्शायी जा रही है जिसके ऊपर द चॉकलेट रूम लिखा हुआ है।